एक लोहे का चैनल गेट दिख रहा है।

लोहे की जालिया दिख रही है।

और यहाँ पे आदमी दिखाई दे रहे है जो कि इसने पीले टी-शर्ट पहनी हुई है।

और एक बोर्ड लगा हुआ है।

और यहाँ पे एक गोल जो है गेट जैसा बना हुआ है।

और यहाँ पर जो है जो मंदिर है काफी पुराना है।

उधर एक कार खड़ी हुई दिख रही है जो की सफ़ेद रंग की है।

ऊपर लैंप दिख रहा है टेबल दिख रही है कुर्सियाँ दिख रही है।

जो कपड़े है यहाँ पे टी-शर्ट है टॉप्स है गाउन है जीन्स है।

ये गेट का रंग जो है बादामी कलर का है।

उसने जो है नीले कलर का टी-शर्ट और हरे कलर --

उतने ऑरेंज हलर की जैकेट पहनी है।

सिर पे टोपिया रख रखे हैं कुछ लोगो ने सफ़ेद रुमाल बांध के रखा है।

ये नदी पे एक बांध बना हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज की मशीन दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं इसमें लहंगा चुन्नी बच्चो के कपड़े।

ये चित्र एक क्लासरूम का दिख रहा है जहाँ पर --

और फसल के बीच में एक छोटा-सा रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

जो भी खाने की वैन ब बना के रखी है।

ये चित्र एक कपड़े की दुकान का है जो कि काफी बड़ी है।

यहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है और यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है।

टेबल पे बैठे हुए है और --